बैलून तैलून सब सजाया बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत मस्त नजारा है।

जो की इसमें कई प्रकार के बुक है।

यहाँ पर जो की --

और ये उम्म जो देख रहे हैं जो की इसके आगे पीछे बहुत सारा लोग भी खड़ा है |

और बहुत मस्त लग रहा है हरा-भरा कितना मस्त रहा --

और हाथी के हा-हाथी के ऊपर एक लोग बै --

और बहुत तरह का जूता बहुत दामी दामी जूता जूता --

अच्छा लग रहा है जबकि बहुत बड़ा दुकान है |

इस तालाब में इस तालाब में नाव है।

और पेड़ है जो की बहुत तरह तरह का गाछ वृक्ष है।